गाड़ियों और एक ट्रक दिखाई दे रहा है।

और यहां पर परचून का सामान भी टांगा हुआ है।

जो एक पहाड़ी के बीच में दिख रही है।

इस बिल्डिंग पर पेला मटियाला व्हाइट रंग किया गया है।

साइड में एक मंदिर दिखाई दे रहा है।

और साइड में एक साइकिल खड़ी हुई है।

अगली साइड बहुत बड़ी नदी दिखाई दे रही है।

ऊपर नीला आसमान भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर दो आदमी दिखाई दे रहे हैं।

आदमी गाड़ी को वाश कर रहे हैं।

पीछे बिल्डिंग पर कितनी सारी लाइटें लगी हुई है।

यहां पर एक टेलीफोन भी रखा हुआ है।

और यहां पर दो दरवाजे दिखाई दे रही हैं।

यहां पर कितने सारे जेंस --

यहां पर गेट पर भी बड़े सीसे लगाए गए हैं।

और यहां पर ग्रीन पेपर भी रखा हुआ है।

इतनी सारी जेंट्स दिखाई दे रही है।

सामने एक होल दिखाई दे रहा है।

यहां पर कितने सारे जेंट्स लेडीज दिख रही है।

इस पर हेयर सलून के कटिंग कटिंग का पोस्टर छपा हुआ है।